और बहोत ही प्यारा है वाइट कलर में है और--

यहाँ पे कुछ लोग डांस कर रहे है अम भारत नाटयम और कॉस्टयूम बहुत ही अच्छा पहने हुए है और कुछ चीज यहाँ पे हो रही है और लड़की लोग बहोत हैप्पी है।

यहाँ बहोत सारा मछली रखा हुआ है यह एक मछली का स्टाल लगा है और मछली को खाने में बहोत ही टेस्टी लगता है बहोत विटामिन्स मिलती है और यहाँ पे कुछ लोग है जो खरीदने--